कुल ईटा वीटा भी सफ़ेद कलर के लौकाता और ई देख्तारी आस पास के नज़ारा भी कितना निक लाग ता।

कुल ओमे बड़ा निक निक कलाकारी बनल बा। आसमान के नज़ारा भी केतना निक लागता।

कुल चारो तरफ देखतानी की पेड़ हरा हरा लौका ताकुल घाट भी देखतानी हरा हरा दीखता कितना निक लगता।

और इ कुल सीढ़ी वीढ़ी भी लगल ह जाए खाती और देखतनी कि कुल रेलिंग वैलिंग भी बनल बा उपरवा और इ कुल हरा हरा पेड़ों लउकता। आसमान के नज़रा भी निक लग --

देखतानी की कुल बच्चा फूटबाल उटबाल खेलत हैन कुललकड़ी वकड़ी अउरी कुल नीला नीला।

आसमान के नजारा भी कितना सुंदर निक लागता एकदम सफ़ेद रंग बिल्डिंग